इते मैदानी एरिया छे जहाँ पर पठार बहुते छे पाहड पर्वत सब।

अब कुछ लोग देख रहल छे टुकुर टुकुर --